पे ब्लैक एण्ड येलो कलर आ किया गया है और यहाँ पे हमें लाइट्स भी दिखाई --

इस तस्वीर मे हमे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गई है अ बिल्डिंग मे हमे कुछ लोग दिखाये गये है एक लड़का है जिसने पर्पल कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।

ब्यूटी की सारी इमेजेस लगी हुई हैं दीवाल पर हमे कुछ और भी तस्वीरे दिखाई गई हैं इसके अलावा एक टेबल है जिसपे हमें येलो कलर के फ्लावर्स देखने को मि मिल रहे हैं।

इस इमेज में हमें बड़ा सा पहाड़ दिखाया गया है इस पहाड़ पे बड़े-बड़े पत्थर है और यहाँ पे कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं और इसके नीचे यहाँ पे य --

इस तस्वीर मे हमे यहां पे एक गैरेज दिखाया गया है यहां पे कुछ कार रखी हुई है कार मे एक व्हाइट कलर की कार है और एक सिल्वर कलर की कार है।